यहां पर बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं।

ये नदी है नदी के बगल में पेड़ पौधे हैं रोड है।

गुरुद्वारे में बहोत सारे पेड़ पौधे बाहर लगे हुए हैं और जो गुरुद्वारे का कलर है वह सफेद रंग का गुरुद्वारा का कलर है।

और तकरीबन कारे ज्यादातर सफेद रंग की है।

यह पिक्चर एक प्रोग्राम की लग रही है।

यह पिक्चर एक कपड़े की दुकान की लग रही है।

और ये काफी बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है ये डबल ट्रिपल है जो मैं देख पा रहा हूं दिखाई दे रहा है इस पि--

यह पिक्चर एक स्टेज शो की लग रही हैं जहां स्टेज पे एक लड़की डांस करते हुए मुझे नजर आ रही हैं।

मैट बिछाया हुआ है और लड़की डांस करते हुए नजर आ रही है।

और ऊपर जो इसकी लाइटिंग वगैरह है काफी अच्छी व्यवस्था की गई है।

यह पिक्चर एक गुरुद्वारे के बाहर से लिए गए पिक्चर हैं मैं जैसा कि देख सकता हूं।

और पार्क के बाहर में देख रहा हूं कुछ कारे भी नजर आ रही है इस पिक्चर में।

यह पिक्चर एक डाउन टाउन कैफे किचन की है।

चर्च जो आपका है वो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है उसके बाहर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी लेडिसे जेंट्स दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगी अलग अलग कपड़ों में--

काफी ही रंग बिरंगा सा अपना ठेले को बनवाया हुआ नजर आ रहा है।

एक रूम कि लग रही है जहां पर सोफा रखा हुआ है अलमीरा रखी है।

ऐसे शीशे का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें दो तारे नजर आ रहें--

और एक लेडीज बाहर से जाती हुई दिखाई दे रही रेड कलर की बड़ी सी बिल्डिंग ये दिखाई दे रही है इस पिक्चर में जैसा मैं देख सक --